ये एक रेस्टोरेंट का फोटो है जिसमें बीच में एक काले कलर की टेबल रखी हुई है।

यहां इसके चारों ओर बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसके बीच में भी दिख रहा है जो की दौड़ रहे हैं यहां।

ये एक पेंटर का दुकान है जिसपे यहां पे एक ऊपर येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें यहां अह व्हाइट कलर से कुछ कुछ बनाया हुआ है पीछे बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं।

यहां साइड में दो दोनों ओर एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है।

यहां पे आगे सीढ़ी भी लगी हुई हैं जो कि यहां पे--